यहां पे अलमारियां भी दिखाई दे रहा है नीचे फर्श में टाइल्स लगा हुआ है।

इस मकान में दरवाजा दिखाई दे रहा है।

छे बाइके के लगी हुई है और तीन हेलमेट टांगा हुआ है यहां हैंगर में कुछ टप कपड़े भी टांगा हुए हैं।

छतरी भी लगाया हुआ है।

यह एक हॉस्पिटल है इस हॉस्पिटल में वायरिंग का काम चल रहा है।

नीचे फ्लावर भी है और कालीन भी बिछाया हुआ है।

यहां पे नीला कलर का भी है और ऊपर में टाइल्स भी लगा हुआ है।

यह एक बहुत अच्छा मकान है इस मकान का बहुत अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है यहां पे बहुत सारा खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

बाइक के बगल में एक और मंदिर है यहां पर भी बहुत विशाल पेड़ है।

यहां पे ईंट भी दिखाई दे रहा है यहां बहोत सारा बाइके दिखाई दे रहे हैं।

लाइट भी लगा हुआ है।

टैटू दिखाई दे रही है और बहुत सारा आदमी लोग भी दिखाई दे रहे है।

बहुत सारा पाए भी लगी हुई है।

यहां पे सेंक भी दिख रहा है।